और पेड़ो पे लाइट लगी हुई है नीचे जमीन पर पौधे लगे हुए है और कुछ झूले लगे हुए है।

यह दृश्य एक मंदिर का है यहां पे तीन मूर्तियां लगी हुई है।

इसके बगल में भी महालक्ष्मी सुजुकी लिखा हुआ है।

और यहां एक जगह दो व्यक्ति खड़े हैं।

यह दृश्य एक पार्क का है जहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है।

दृश्य एक रेस्टोरेंट की है।

और इसके ऊपर बहुत सारी रंग बिरंगे लाइट से सजावट की हुई है।

जो कि सफेद रंग का है और यहां सफेद रंग का काउंटर भी बना हुआ हैं।

यह दृश्य एक दुकान का है जहां पे दो पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है डाग नाइट ।

यहां कुछ चेयर लगा हुआ है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं।

दृश्य एक घर के बाहर की है जिसका रंग सफेद है और हरा है।

टेबल के ऊपर कुछ किताबें रखी हुई है।

बगल में दीवाल है जिसमें कुछ क्लाइंबिंग प्लांट लगे हुए हैं।

बगल पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।